और यहाँ पर कुछ ग्रास दिखाई दे रहा है और बांयीं तरफ से एक और कार जा रहा है एण्ड न्यू गाड़ी सामने खड़ा हुआ है जोकि व्हाइट कलर में है।

इस पिक्चर मे आप लोग देख सकते हो एक शायद से यह नैशनल पब्लिक स्कूल है और यहाँ पर गेट जो है ब्लू कलर मे है। दाए तरफ पिंक कलर मे वाल और जनाला किया गया है।

इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। ये रेस्टोरेंट के अंदर का पिक्चर है। जहाँ पर तीन बच्चे लड़कियाँ मिलके पिज्जा खा रहा है। दाएँ तरफ भी एक बच्चा एक बच्चियाँ मिलके पिज्जा खा रहा है।

यहां पर देख सकते हो फिर से एक दुकान दिखाई दे रहा है जहां पर बोहोत सारे लोग खरीदारी के लिए आता है। यहां पर श्री हनुमान और गनेश का मु अं मु अं पोस्टर टंगा हुआ है।

यहाँ पर य एक कार देख सकते हैं। उसके पीछे और एक कार है और उसके पीछे कुछ जंगल है दिखाई दे रहा है।

जो कि ऑर्डर टाइम जीरो वन टू नाइन पी एम लिखा हुआ है | डिलीवरी अवेलेबल ऐट हमीरपुर यू. पी. टू वन जीरो थ्री --